यहां एक मस्जिद है जो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं रेड कलर का कालीन डाली हुई है और व्हाइट कलर का हैऔर एक आदमी टोपी पहनी हुई हैं।

जिसके पीछे दो लड़किया बैठी हुई है मुँह में फेस कवर कर के ट्रक भी खड़ा हुआ है व्हाइट कलर का रोड का कलर ब्लैक है और कुछ बिल्डिंग भी दिख रही है यहा पे सब जा रहे है।

और जो कि वाय ग्रीन कलर की हैं ब्लू कलर का इसमें पुता हुआ हैं और बल्ब लगा हुआ हैं जो की वाइट कलर का हैं और कुछ वायर्स दिख रही हैं।

और नीचे कुछ घांस लगी हुई है और दो खंबे दिख रहें हैं जोकि लाइट वाले हैं और पेड़ भी दिख रहा है बस एक बस का कलर नीला पुता हुआ है और पीला और एक बस में पूरा पीले कलर का कलर पुता--

पानी के उस तरफ एक झोपड़ी टाइप दिख रही हैं और साइड में घास लगी हुई हैं और जो की हम दिख रही हैं पानी के बीच--

यहाँ एक रेलवे पूल दिख रहा है रेलवे पूल मे क्रॉसिंग दिख रही है साइड मे नदी दिख रही हुई है और ऊपर आसमान दिख रहा है।

रेलवे क्रॉसिंग में कुछ कंकर पत्थर या गिटि डली हुई है जोकि थोङि सी जगह पे दिख रही है।